ये गेट लकड़ियों का बना है आगे लोहे के गेट भी लगे हैं।

साइड में गुलदस्तें हैं जिनमें छोटे छोटे फूल है तीन आदमी चल रहे हैं एक औरत चल रही है जिसने लाल रंग का सूट पहना है।

पीछे एक आदमी खड़ा है जिसने नीले रंग शर्ट डाली है ब्लैक कलर की पैंट पहनी है।

पीछे कुछ कुर्सियां है जो सफेद रंग की है।

यह एक समुद्र है यहां पे लोग अपना पाप--

और यहां पर कपड़े लटकाए गए हैं जो की शर्टे लटकाई है।

यह एक जिम है ऊपर कुछ सफेद रंग से लिखा है नीचे खाना खानेदार टाइलें हैं सामने शीश--

एक चेयर के ऊपर अखबार रखी है।

डांस प्रस्तुत कर रहे हैं पीछे चेयर्स लगी है।

जिसमें चावल है सफेद रंग के है।

बेड के ऊपर कुछ और पैकेट है जिसमे पेन रखे हैं पीछे एक आदमी खड़ा है।

और साथ में ही कुछ बेचने की व्यवस्था की गई है।

ऊपर से कुछ बड़ी गाड़ियां आ रही है।

इस स्टैच्यू को सुनहरे रंग से पेंट किया गया है इसके हाथ में एक बुक है।

ऊपर आसमान मे सफेद बादल भी दिख रहे है।

यह एक रोड है साइड में दो गाड़ियां चल रही है ऊपर आसमान सफेद है।

रोड पर दो सफेद लाइट्स दिख रही है।

इस पर रॅक बने हैं रॅक में अलग अलग मिठाईयाँ हैं।

जोकि अलग अलग रंग की है और एक से बहोत महंगी लग रही--